सामने में गेट नजर आ रहा है वहां के गेट का कलर पर्पल है कुछ ऊपर में--

कुछ कटी हुई नजर आ रही है कुछ लोग खड़े हैं इधर उधर घूम रहे हैं।

यहां पे गार्डन नजर आ रहा है कुछ पेड़ लगे नजर आ रहे हैं यहां पे जो पटरी है लगी बनी हुई है साइड में बाउंड्री उसके कलर में--

औरत यहां पे काम कर रही है फावड़े से ले के यहां पे एक बाल्टी पड़ी है एक लोग खड़े हुए हैं मट्टी का ढेर लगा है।

यहां पे एक नर्सरी नजर आ रही है यहां पे लिखी श्री नरता नतराम।

यहां पे दोनों तरफ में बाईक की लम्बी लाईन लगी हुई नजर आ रही है।

गेट पे चार पिलर बने हुए हैं बड़ा ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है।

और यहां पे एक मकान नजर आ रहा है पानी मे बड़ा गंदा पानी है।

सामने में मुर्गी नजर आ रही हैं बहोत कचरा फैला हुआ है मुर्गियों के पंख नजर आ रहे हैं।

यहां पे कुर्सी लगी हुई है दो लाइट लगती चल रही हैं और ऐ सी लगा हुआ है कुछ फ्लेक्सी लगी हुई हैं यहां पे--

सामने में एक हॉल नजर आ रहा है हॉल के जो टाइल लगी हुई हैं फ्लोर पे--